अस्पताल मुझे दिख रहा है कितना अच्छा अस्पताल लग रहा है यह देखिए पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

यह देखिये यहाँ पे भाईजान मूर्ति निकल लई है| मूर्ति बोहोत ही अच्छी है| ये मूर्ति भी बोहोत अच्छी देखिए कितनी अच्छी लग रही है | आपको क्या बताये बोहोत अच्छी मूरत लग रही है और ये देखिये इधर भी लोग हैं उधर भी लोग हैं।